हरे कलर के शर्ट वाले डॉक्टर के जेब में फोन है।

और यहां पर एक दरबार सजाया गया है पंजाबियों का यहां पे पूजा होता है।

और यहाँ पे कई लड़के-लड़कियाँ ऐसे हैं जो यहाँ पे खाना दे रहे है।

इस फोटो में दर्शाया जा रहा है की एक लड़की यहां नृत्य कर रही है।

और आस पास बहोत सारे घर भी है।

और कार बनाया भी जाता है।

यहां पर ढलाई का काम हो रहा है।

यह फोटो में बहुत से लोग योगा कर रहे हैं।

जहां पे बहुत सारे सामान हैं।

बहोत सारे लोहे का सामान दिखाया गया है।

और यहाॅं पे बहोत सारे सामान पड़े हुए हैं।

और एक लड़की खड़ी हुई है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जहां बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

नहाने आए हुए हैं।

यह फोटो में तीन व्यक्ति--